ये दुकान के अंदर काफी सारे पैकेट्स रखे हुए दिख रहे है सामने एक रस्सी हैजो की हरे सफेद कलर की है।

सारा मैदान है यहाँ पे काफी सारे बाइके खड़ी हैं जोकि काले रंग की हैं कुछ काफी सा लोग खड़े हुए दिख रहे हैं आस-पास काफी सारे पेड़ लगे हैं जिसमे हरे कलर के पत्ते हैं।

आसपास काफी सारे पेड़ लगे हैं इसमें हरे कलर के पत्ते हैं कुछ लाईटे जलते हुई दिख रही हैं एक आदमी है जिसका हाथ दिख रहा है जो की फिरोज़ी कलर की शर्ट पेहना हुआ है।

ये रोड पे दो बसे खड़ी हैं जो की लाल करी लाल कलर की काले कलर की है एक रानी और काले कलर की है इसमें का प-पर्दे डले जो रानी कलर के--

आसपास लोग खड़े हुए दिख रहे है एक ऑटो दिख रहा है जो की काले पिले कलर का है कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं जिसमे हरे कलर के पत्ते हैं सामने आसमान दिख रहा है।

प्लास्टिक से ढका हुआ है सामने कुछ रेड कलर का कुछ लिखा हुआ है सामने ऊपर खिड़कियाँ दिख रही हैं।

इतना सारा मैदान है यहाँ पे। काफी सारी घास है। एक सामने भालू बैठा हुआ है पीछे से एक भालू आता हुआ दिख रहा है जो की दोनों काले रंग के हैं।

आस-पास कुछ पिंजरा टाइप का बना हुआ दिख रहा है कुछ घांस लगी हुई पड़ी हुई दिख रही कुछ कचरा पड़ा हुआ पेड़ के नीचे एक हिरन बैठा हुआ दिख रहा एक पेड़ के साइड में हिरन खड़ा हुआ एक सबसे पीछे खड़ा हुआ दो दिख रहे --

डाले हुए जो कि लाल और नारंगी नारंगी और पीले कलर के सामने एक शटर है जो बन खुला हुआ है सामने खी दरवाजा दिख रहा है सामने काफी सारे लोग खड़े हुए दिख रहे मकान के ऊपर खिड़कियाँ दिख रहीं हैं।